उस व्यक्ति इइइ ने एक काले नीले रंग का चश्मा पहना हुआ आ है।

उस दुकान के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ आआ है।

ये खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है।

और दो व्यक्ति उनकी दाढ़ी मूंछ बना रहे हैं।

और काले रंग की बड़ी सी कुर्सी बिछी हुई है।

एक और कॉफी का मग रखा है। उस मग के बगल मे काले रंग का चश्मा रखा है।

और बिल्डिंग के बाहर एक ओर व्यक्ति खड़ा है जिसने टोपी पहनी है।

जमीन पर पल्ली बिछाकर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं उन बच्चों के सामने ही कुछ बच्चे खड़े हैं।